सामने एक कार के मिरर दिखाई दे रहे---

इसकी दूसरी तरफ एक मकान है जिसे पिंक कलर से पेंट किया गया हैं अगल बगल बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है ऊपर नीला आकाश --

नीचे बहुत ज्यादा पानी दिखाई दे रही है ऊपर सन की रिफ्लेक्शन नीचे अता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है अगल-बगल में कुछ पेड़ वेगेरा भी लगाए --

यहाँ पे पुल बनता हुआ साफ तौर पे देखा जा सकता है नीचे बहुत सारी रेत वगेरा भी है और बहुत सारे स्थान पे पानी लगा हुआ है।

अगल बगल बड़े-बड़े कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है ऊपर नीला आकाश साफ तौर पर देखा जा सक----